इस तस्वीर में हमें एक मोबाइल फोन का दुकान है।

और रेफ है रेफ पर बहुत सारा मोबाइल फ़ोन का डब्बा सब रखा हुआ है।

अंदर में बहुत सारा बैलून सबको सजाया गया हुआ है।

यहां पे जिम में टायर है टायर को--

हे ऊपर में लाइट जल रहा है।

हूं यहां पे खुला मैदान है।

आसपास बहुत सारे पेड़ सब है।

ऊ पेड़ में उस ऊपर में सूरज भी है हमें देखने को साइड में थी--

हमारे इस रूम में हमें यहां पे बहोत सारे चेयर रखें हुए हैं।

हमें एक बड़ा सा मंदिर का त्रिशूल है देखने को मिल रहा है।

बैलून लगे हुए हैं सैलून में--

पीछे में बहोत सारा पोल सब पे बहोत सारा लाइट लगा हुआ है।

पीछे में बहोत सारा घर है।

यहाँ पे हमें एक मिठाई का हुआ है लड्डू रखा हुआ हैं।

आसपास बहुत सारा पेड़ पौधा सब है।

इधर दीवाल है दीवाल देखने को मिल रहा है।

ऊपर में आसमान है बहुत आसमान नीरा आसमान का रंग नीला है हमेरे पास --

बहुत सारा कुर्सी रखा हुआ है कुर्सी सब पे--

एक चित्र बना हुआ है ई शादी इसमें लाइट जल रहा है।

उधर बहुत सारा आदमी सब है यहां पर--

हमारे यहां पर मछली सबको दिया जा रहा है कैरेट में--

और यहां पे बहोत सारे गाड़ी लगे हुए हैं।

जिसमें लोहे का खुला हुआ है।

हमारे यहां सामने में टेबल है।

फ्रीज तो लाल रंग से टिप सराया गया हुआ है।

टेबल रखा हुआ है उसके आसपास यहां पर प्रिंटर है।

हमारे यहां पर टेबल है टेबल पे--

कुर्सी का रंग पीला है यहां पर--

बहोत सारा तोते तक पिंजरा हमें देखने को मिल रहा है।

लड़की है लाल रंग का शूटर पहनी हुई ।

फिर से दोनों लोग आदमी चल रहे हैं आदमी सबके हाथ में--

पीला हरा रंग से पेंट किया हुआ है।

नीचे में टाइल्स लगा हुआ है उसके बगल में यहां पर एक--

सबसे ऊपर में लाइट सब लगाया गया है।

दीवाल पर घड़ी देखने को मिल रहा है।

यहाँ पे खुला मैदान में एक लड़का है जिसने व्हाइट कलर का--

आसपास बैठने वाले इस मैदान में बनाये गए हैं।

के बगल में यहां पे इलेक्ट्रिसिटी वायर इधर में--

काला है और इसके बगल में यहाँ पर एक--

घर के ऊपर व्हाइट कलर से पेंट हैं।

और खुला आसमान है आसमान नीला--

यहाँ पे साइड में एक बहुत ही छोटा सा फ्रिज है इलेक्ट्रिक --

ऊपर में तमरे में लाइट लगा है ए_सी है कैमरा भी है।

बहुत सारा आदमी सब है।

का पानी काला है नाव है नाव लकड़ी से बना हुआ है।

जो सामने घाट है घाट पे बहुत सारा--

बहुत सारा आदमी सब बैठा हुआ है।

जहाँ पे इट इट हमें टैमेरा है।

टेबल पर वाटर बोतल सब रथा हुआ है पीछे में लाइट --

जिसको एलवेस्टर से बनाया हुआ है।

दूरबीन है सामने में एक है बहुत सारा--